हो सकता है ये शो करना चाहता है की की शौक क्या है बट इसने अपनी सेल्फी लियी हुयी है डयानिम् सैलून के शॉप पर खड़े हो के।

यहाँ एक्सरसाइज वगैरा करते है तो शायद ये दीपावली की टाईम की पिक है किसीने डेकोरेट करके मकान को--

ये एक ऊपर मस्जिद दिखाई दे रही है जहा पर एक ही बंदा दिखाई दे रहा है अच्छी लग रही है मस्जिद भी।

कार चार पांच लोग सर्विस कर रहे है कस्टमर प्रोवाइड कर रहे है कार की सर्विसिंग कर रहे है कार दिखाई दे रही है।

ये किसी का म्युसियम में है म्युसियम रूम है इसमें अ गिटार वगैरा खुर्ची है गिटार है.

और म्यूजिक सिस्टम है लैपटॉप है सिस्टम है संगीत का रूम है म्यूजिकल रूम --

यहाँ खेतीबाड़ी होती है किसीने साईड ले ली है और सामने पौदे भी दिखाई दे रहे है और पेड़ है बड़े बड़े बा--

ये एक हॉस्टेल ही है बट यहाँ और कोई नहीं दिखाई दे रहा है हॉस्टेल में.

ये किसी ग्राउंड की पिक है जहा पर एक और ब्रांडेड टैटू बने हुए है.

गेंडे की मूर्ति है एक उसका बच्चा है एक गेंडा है.

ये तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है ऑफिस में बट ये काफी बड़ा स्टॉल लगता है.

ऑफिस में वर्कर काम करते हुए किसीने सेल्फी ली है.

वैसे तो सभी गाना ही गा रहा होगा शायद ये तो म्यूजिकल रूम है।

किसी हॉल के पीछे है जहा पर तीन चार आदमी बैठे हुए है.

योगा क्लास का प्रचार करने के लिए किसीने इसको किया है बाहरसे सेल्फी ली है इसकी।

ये एक डांसिंग क्लास चल रही है जहा लडकिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे है.

यहाँ पर एक डांसिंग रूम है ये जिसमें स्टेप कर रहे हैं तो सभी फॉलो भी कर रहे हैं।